और कुछ शॉप है या क्या है जो स्पष्ट रुप से दिखाई नहीं दे रहा है।

येह स्टेचू है लेकिन मैं स्पष्ट रूप से नहीं बता सकता--

और ये पेड़ पौधे जो है हरे भरे दिखाई दे रहे हैं।

से देख रहे हैं लगता है कि कोई नेता का आगमन है लोग वेट कर रहे--

र राइट साइड दिखाई दे रहा है साइड दिखाई दे रहा घास साफ--

भी दिखाई नहीं दे रहा है अंधेरा ही अंधेरा है न राइट साइड दिखाई दे रहा है न लेफ्ट साइड साइड से कुछ फ्लैट - व्लेट दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में मुझे काउंटर दिखाई दे रेया हैं।